ये शादी का हॉल है जहां में व्हाईट कलर फर्नीचर्स लोग लगा के हैं और--

येलो कलर का फ्लावर है पॉट है ग्रीन कलर का लिप्स है हेयर स्प्रे है क्यू_आर कोड है।

नीचे है व्हाइट कलर का एंब्रॉयड है और सर्टिफिकेट लोग लगा के हैं।

एक दुकान है जहां में सन साइन सन एंटरप्राइज लिखे हैं और उसके बाद उसमें बाकी लोग दिखाई दे रहे हैं पेंट्स करने वाला लोग पाइप लोग।

रस्सी गमला फ़्लोर मेट्स और इसके बाद--

बिल्डिंग है और गाड़ी एक व्हाइट कलर का है बड़ा वाला पेड़ के इधर है पोस्टर एक ठो है।

स्काई द्वारा फुगी फुगी है और बहोत सारा--

ये एक चर्च है जहां में ऑफ क्रिस --

टाइम बहोत फोकी है घर छोटा छोटा घर है और साइड वाला बिल्डिंग येलो कलर का है और लाइट्स लोग बहोत सारा दिखाई दे रहे--

ये एक हेयर सलून है जहां में फ्लोर ब्राउनिश कलर है और छह लोग भी ब्राउन कलर का हैं प्रोडक्ट लगाके हैं।

वॉल वॉल में लड़की का फोटो चिपका के फ्लावर पॉट्स लोग हैं टेबल है।

है ब्लू कलर का पिलर है फ्लावर पॉट्स दिखाइ --

इसमें भारतीय स्टेट बैंक का है उसका बहोत सारा पोस्टर्स लोग लगा हैं।

साइड में एक ठो लड़का है डोर ब्लू कलर का ग्रील है।

ये एक रूम में है जहां में वॉल व्हाइट कलर का है और रेड कलर का पिलर लुक लगाया हुआ।

ये से वायर है माउंटेन माउंटेन से स्काई ब्लू है।

इसके एक गेट है ब्लैक और गोल्डन कलर का वॉल एलो कलर --

ये पिक्चर में रेस्टोरेंट दिखा रहा है उसमें टेबल ऐश कलर का है।

ये एक गेट है जिसके अंदर दो ल दो एक लड़की एक लड़का गाड़ी रास्ता में आ रहा है।

और चर्च लोग है और एक ठो रेड कलर का चेयर है।

रास्ता पक्का है और साइड साइड में ब्लू ऊपर तरफ में ब्लू कलर का--

हे मैंगोज लिख के है ट्रांसपेरेंट विंडो है ग्लास है।

इसका ब्लैक कलर का बैक दो दो है और ग्रिल दिखाई दे रही है साइड में उसके बाद--

ओपेन निक्के है डोर मेड उसमें अम--

एक पुलिस स्टेशन है दोईमुख पुलिस स्टेशन लिखा है पोस्टर में और साइड में कुछ पोस्टर लगाया हुआ है उसका रास्ता इसका--

थोड़ा पानी पानी है कच्चा रास्ता है गाड़ी लोग दिख रहे हैं और बिल्डिंग येलो और रेड कलर का बनाया हुआ है इसके बाइक है स्कूटी है।

और ऊपर में पुलिस स्टेशन लिख के है और साइड में बिल्डिंग्स लोग हैं इसका बाहर ग्रीन फॉरेस्ट लोग दिखाई दे रहे इधर।

पीछे में है और ब्लैक रेड और अन्य कलर का गाड़ी है।

बुक बुक स्टोर है ऊपर में लिख के है मिथिला बैंक्स स्टोर ।

और इसमें दो इंसान हैं खड़ा होके दो इंसान बैठ के उसमें बुक्स लोग दिखाई दे रहे हैं बहुत सारा--

पीछे में बहोत सारा औरत दिखाई दे रहे अ गेल के बाहर खड़ा होके बिल्डिंग है।

टेबल ब्राउनिश कलर का और येलो कलर का भी दिख रहे हैं इसके बाद --

और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।

फैन है लाइट है टी_वी लोग रख के है रिमोट लोग है।

ब्लैक कलर से शर्ट और ग्रे कलर का कपड़ा पहनाया हुआ है।

और एक ठो में गोल्डन और ग्रीन कलर का पह पहनाया है।